यहाँ पर लाइब्रेरी हैगी जहाँ पर काफी सारी किताबे रखी हुई हैगी अलमारियों मै और एक अ टेबल रखी हुई है काफी बरी लम्बी सी और चेयर रखी हुई है ब्लू कलर जहाँ पर कुछ बच्चे है।